कुछ पेंटिंग रखा हुआ है पेंटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है।

सर्विसिंग का दुकान के बहार एक करकट का शेड बना हुआ है।

एक व्यक्ति सफेद रंग का शर्ट पहन रखा है।

स्कूल के आगे वैन लगा है स्कूल के आगे गाड़ी लगा हुआ है।

यहाँ कुछ गाड़ी उपस्थित हैं। व्यक्ति ने काला रंग का पैंट पहन रखा है।

यह एक इमारत है इमारत कई पिलरों पे खड़ा है इमारत में कई सारी खिड़कियां व दरवाजे है।

रूम का दीवार नीला रंग का है रूम का फर्श सफेद रंग का है।

यह एक स्टेज है। स्टेज फूलो से सजा हुआ है।

यहां कुछ लोग उपस्थित हैं। बाहर में कुछ बाइक लगा हुआ है।

ये ट्रे के ऊपर रखा हुआ है ट्रे का रंग ब्लू है ट्रे के बगल में न्यूज़पेपर है।

मैरिज हॉल में कई कुर्सियां हैं मैरिज हॉल में कई लाइटें लगा हुआ है।

रूम का दरवाजा ब्राउन कलर का है रूम का दीवार का रंग सफेद है।

इमारत का रंग सफेद है रोड के बगल में एक बैंक है बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक है।

यह एक ग्राउंड है ग्राउंड में कई लोग उपस्थित हैं।

यहां एक व्यक्ति खड़ा है व्यक्ति के हाथ में घड़ी है।